यह बहुत ही सुन्दर है यहाँ पे बहुत सारे लोग-आते है यह जगह बहुत ही सुन्दर दिख रहा है काफी सारी लोगो की यहाँ पे भीड़ लगी हुई --

होटल सभी फंक्शन के लिए सभी आदमी बुक करते हैं।

यहाँ पे बोहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है। यहाँ पे बोहोत सारे लड़के लड़कियां यहाँ पे आये हुए है।

यहाँ पे बहुत सारे इस घाट में छठ महापर्व के लिए आए हुए हैं।

मिलते है तरह-तरह के दुपट्टे यहाँ पे टंगे हुए हैं ।

यह सैलून में आते है। यह सैलून में बोहोत ही अच--

बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।